जिसमें दरवाजे भी लगे हैं लोहे के उसके आसपास कुछ व्यक्ति हैं भवन में बहुत सारी खिड़कियां बनी है।

जिम में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

भवन सफेद कलर से पोता हुआ है।

ऊपर की ओर तार लगे हुए हैं।

भी अलवारियों में कुछ फल रखे हैं।

बिल्डिंग के आसपास बड़े-बड़े पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।